नदी में एक नाव नजर आ रही है।

कुछ लोग दिखाई दे रहें हैं।

एक नीले रंग की नाव दिखाई दे रही है जिस पर दो लग चढ़े हुए हैं।

एक रोड नज़र आ रही है।

एक लड़का बैग टाँगे नजर आ रहा है कुछ पेड़ नजर आ रहे है ।

एक खिड़की दिखाई दे रही है।

ओर दो त्रिशूल की चित्र नज़र आ रहें हैं।

उसके ऊपर तीन टेंट नज़र आ रहें हैं।

पीछे कुछ पेड़-पोधे दिखाई दे रहे हैं भवन नजर आ रहा है।

खेत में फसल लगी हुई दिखाई दे रही है।

एक आदमी लाल रंग की जैकेट पेहने हुए है और सर पे हेल्मट लगाए हुए है ।

जिसपर ए.टी.एम. एक्सिस बैंक लिखा हुआ है।

आसपास कई बड़े पेड़ लगे हुए नजर आ रहें हैं।